यहां पर एक जिम की तस्वीर को दिखाया जा रहा है और यहां पर बहोत सारे लोग बॉडी बनाने आते हैं और यहां पे कई तरह के नए-नए बॉडी बनाने का सामान रखा गया है और यहाँ --

यहाँ के नजारे भी कुछ और देखने को मिल रहे हैं। काफी अच्छी दिखाई--